और यहां बहुत सारे खाने पीने के सामान भी रखे गए हैं।

और यहां एक बगीचा भी दिखाई दे रहा है जिसमें बड़े बड़े पेड़ लगे हैं।

इस तस्वीर में बहोत सारी मोटरसाइकिले दिखाई दे रही है।